एक बस्तर डेयरी फार्म की दुकान दिखाई दे रही हैं।

गरम गरम भजिया मर्सेस ऐसा लिखा हुआ है गुजराती में सब लिखा हुआ है।

इसमें एक आदमी बाइक पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है एक गेट की तरफ से --

लीची का कलर रेड कलर का लीची का कलर दिखाई दे रहा है।

एक लाइट हाउस का दिखाई दे रहा है जिसमें लाइट हाउस का बोर्ड मारा हुआ--

बहोत सारे ऊपर ग्रीन कलर के पेड़ दिखाई दे रहे --

एक ना ना पतवार से बोट चला रहा है एक मर्द बड़ा उम्र वाला जो आका है वो अह बोट चला रहा है एक आगे बैठा हुआ है।

न्यू एन_के ज्वैलर्स का दुकान दिखाई दे रहा है जिसमें ये दुकान है ना उन्नीस सौ अस उन्नीस सौ अस्सी से चालू की है दुकान उसकी तरह उसका बोर्ड लगा हुआ है।

जीसमें एक सा बहोत सारे अलग अलग कलर के येलो ब्लू पिंक ऐसे अलग अलग कलर के गुब्बारे लगे हुए हैं।

घर है जिसमें सिड्ढी ब जाने के लिए सिड्ढी लगी हुई हैं।

जो जो ऑटो को एक रिपेयर कर रहा है और जो पिलर हैं वो आधा ब्लू कलर के पेंट किए हुए हैं।

यह एक गार्डन दिखाई दे रहा है जिसमें बिल्डिंग दिखा रही है दूर।

साइड में बहोत सारे ईंटें रखे हुए हैं जो एक मजदूर ईंटों को ऊपर काम के लिए ले जा रहा --

ये एक मंदिर का फोटो दिखाई दे रहा है।

इसमें का सामान रखा हुआ है एक टेबल फैन दिखाई दे रहा है।

और लाइटें ऊपर मू सारी लाइटें दिखाई दे रही है।

यह एक दुकान दिखाई दे रही है जिसमें यूनिक सेल्स एंड --

और चारों तरफ वो आने जाने के वो रोड दिखाई दे रहे हैं जिसपे रोड पे व्हाइट लाइनिंग की हुईं हैं साइड में।

और एक बोर्ड पेट्रोल पंप का बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

उसके दोनों तरफ बाउंड्री टायरों की बाउंड्री बनाई हुई हैं।

एक ने मास्क पहना हुआ है एक ने मास्क नहीं पहना हुआ है।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

सामने बादल दिखाई दे रहे हैं और जो पानी भरा हुआ है वो ब्लू कलर का साफ पानी दिखाई दे रहा है।

और दोनों तरफ दिवाले बनी हुई है सामने कुछ पेड़ दिखाई दे रहे --

एक आदमी खड़ा हुआ है जिसने जिस जिसने अ शूज पहने हुए हैं।

और नीचे एक अह लॉन बना हुआ है ग्रीन का घास लगी हुई है।

ये एक होटल के काठियावाड़ी होटल की फोटो दिखाई दे रही है।